यहां दृश्य एक ढाबे का है जो कि नीला रंग का है।

यह दृश्य एक नदी का है जिसका पानी बहोत गंदा है।

और कुछ शो प्लांट्स लगे हुए हैं और कुछ शो ट्रीज भी लगी हुई है साइड साइड में।

सामने एक दुकान है जहां पे सेवन अप का पोस्टर लगा हुआ फन कैस्टर लगा हुआ है।

इसके बाहर बैनर लगा हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है।

यहां कांच का गेट है और कांच में कुछ बैलून लगे हुए हैं।

पत्थर पर गेंदा फूल से सजा हुआ है।

यह दृश्य एक गैरेज का है जिसका दीवाल करकट का है।

बगल मैं एक बार बॉक्स है जो कि काले रंग की है।

इसके सीलिंग पर पंखा लगा हुआ है।

जैसे मूली आलू प्याज आदि।

यह दृश्य एक गुमती का है जिसमें कुछ सामाने रखी हुई है।

इसके सीलिंग पर पंखे लगे हुए हैं यहां एक खिड़की है।

यह दृश्य एक मस्जिद का है जिसका रंग सफेद है।

इस दृश्य में दो बस लगे हुए हैं जिसका रंग एक लाल और सफेद--

और कुछ महिलाएं साड़ी पहन कर जा रही है और एक कुर्ती पहनी हुई है।